हाथ एक में गमिला पकड़े हुए है एक मिस्त्री उनको मसाला दे रहा है छत में रॉड बिछा है इता--

यहां पे दो कार खड़ा है गार्डन में बहोत सारे पेड़ हैं।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है हॉस्पिटल में बेड लगा हैं अं थाली वगैरा कुछ है।